इसमें एक इमारत बनी हुई है जो की सफेद कलर के रंग में रंगी हुई है इसके ऊपर नीले और लाल रंग में एक बोर्ड लगा हुआ है।

जो लाल कलर के एंगल से बंधा हुआ है ब्रिज के ऊपर लाइट लगी हुई --

इसमें सड़क पर खड़ी हुई एक बस दिखाई दे रही है बस में ऊपर रेड कलर से हैडिंग लिखी हुई है।

इसके साइड में एक वाइट कलर की बस खड़ी है जिस में साइडिंग पट्टी नीले कलर की एवम ऑरेंज कलर है। बस के सामने कुछ आदमी खड़े हुए है।

प्रतिमा का कलर गोल्डन कलर है। एवम प्रतिमा के आगे एक भिक्षु का --

इसमे इक ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है ओवरब्रिज से एक मोटरसाइकिल वाला जाता हुआ दिख रहा है जो रेड कालर का हेलमेट लागये हुए है।